पिल्लर दिखाई दे रहा है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं नीचे जमीन दिख रहिए नीचे घास दिख रही है पेड़ पौधे लगे हुए है ।

सामने बहुत से लोग दिखायी दे रहे हैं दो लड़कियाँ दिखायी दे रही हैं जिन्होंने साड़ी पहना हुआ है चूड़ी पहनी है पीछे पर्दे दिखायी दे रहा है जिनका कलर पिंक और येलो दिखायी दे रहा है।

सामने एक मंदिर का इमेज है जिसमे मंदिर मे सजावट दिखाई दे रही है बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।

सामने एक ऑटो दिखाई दे रहा है एक आदमी दिखाई दे रहा है एक औरत दिखाई दे रही है सीढ़ीयाँ दिखाई दे रही है।

सामने एक ब्रिज दिखाई दे रहा है ब्रिज के नीचे से पानी दिखाई दे रहा है जो कि सफ़ेद और काला दिखाई दे रहा है पेड़ पौधे दिखाई दे रहै है पेड़ो का कलर हरा और काला दिख रहा है।

सामने बोर्ड लगा हुआ है ड्रेसिंग रखा हुआ है सीढियाँ दिखाई दे रही है सामने कांच दिखाई दे रहा है ।

और पम्पलेट चपका हुआ है फूल दिखाई दे रहै हैं कुर्सी दिखाई दे रही है ।